एक बड़ा सा परिसर है जिसके पास एक छोटा सा भवन है भवन का प्रवेश द्वार एक चैनल गेट का लगा हुआ-- भवन के सामने कुछ बच्चे साइकल चला रहे है भवन के बगल में --

एक बड़ा भवन जिसके सामने कुछ पेड़ पौधे है भवन के पास कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है कुछ लाल कलर के डिब्बे पड़े है भवन के ऊपर एक बिजली का खंबा लगा --

एक रोड इसमें बस खड़ा हुआ इसका बगल में एक मूर्ति बनी हुई जिसमे एक व्यक्ति तबला लिए खड़ा हुआ है ऊपर में एक लाइट लगा हुआ है।

मैदान के आस पास कुछ लोग है मैदान मे--

एक बड़ा भवन जिसमें नगर पंचायत बस्तर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है भवन के सामने दो गाड़ियां है एक कार खड़ी है भवन के ऊपर एक खंभा लगा हुआ है भवन के बाहर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक गेट है जिसमे लोहे का गेट लगा हुआ है गेट के बहार कोई गाड़िया खड़ी हुई है गेट के बाहर एक व्यक्ति खड़ी है और पीछे एक जो है लाइट लगा है।

एक बड़ा सा भवन जिसके आस पास कुछ पेड़ पौधे भवन के सामने एक --

एक दुकान जिसमे टी_वी लगा हुआ है दुकान के आस पास कु काँच के डिब्बे और कुछ काउंटर रखा हुआ है काउंटर मे कुछ--